मुझे इस फोटो में सामने मकान भी दिखाई दे रहें हैं।

मुझे इस फोटो में सामने बहुत पेड़ दिखाई दे रहे हैं।